ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं आसमान एकदम व्हाइट दिखाई दे रहा हैं काफी सारे पेड़ पौधे भीं दिखाई दे रहें हैं जिसके पत्ते--

सामने एक रोड दिखाई दे रही है रोड पक्की दिखाई दे रही है।

आसमान एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है।

और साइड मैं काफी झालियां भी दिखाई दे रही हैं झालिया सफेद रंग कि दिखाई दे रही हैं पक्की सड़क भी दिखाई दे रही हैं सामने एक मकान दिखाई दे रहा हैं।

सामने दीवाल दिखाई दे रहीं हैं।

जिस के पत्ते हरेभरे दिखाई दे रहे है एक औरत दिखाई दे रही है।

जिसमें ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई है शर्ट के नीचे साड़ी पहनी हुई है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पेड़ के पत्ते हरे दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजा कांच का और लकड़ी का दोनों का दिखाई दे रहा है।

और लाइट दिखाई दे रहीं हैं लाइट जल रहीं हैं।

तीन और मूर मूर्तिया भी दिखाई दे रही है।

आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है।

काफी डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर झूमर भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक मकान दिखाई दे रहा है।

उसके पत्ते हरे हरे दिखाई दे रहे है।

सामने बस स्टॉप दिखाई दे रहा है काफी सारी बस भी दिखाई दे रही है काफी सारी कार भी दिखाई दे रही है।

गुलाबी और जामुनी रंग के दिखाई दे रहे है।

सामने एक बढ़िया सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक औरत चलती हुई दिखाई दे रही है उसने केसरी रंग के साड़ी पहने है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर बादल दिखाई दे रहे है।

काफी रोशनी भी दिखाई दे रही है यहां पे वाटरपार्क्स की राइट्स भी दिखाई दे रही--

सामने काफी सारी लड़कियां दिखाई दे रही है सभी ने जैकेट पहना हुआ है और काफी ब्लू टी शर्ट भी पहने हुए--

सामने काफी सारी साड़ियां दिखाई दे रही है साड़ियां सभी कबाट में रखी दिखाई दे रही है।

डेकोरेशन दिखाई दे रहा है काफी सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।